चकरा जैसा दिख रहा है और यहाँ पे कुछ येलो कलर का दिख रहा है कुछ ब्लू कलर मे दिख रहा है यहाँ पर एक लैस लगा हुआ दिख रहा है ब्लू कलर का।